यहाँ पे डब्बे भी दिखाई दे रहा बॉल भी दिखाई दे रहे है यहाँ पे कुछ बॉक्स भी रखे हुए दिखाई दे रहे और अलमारी भी दिखाई दे रहे हैं।